यहां पे आप दख देख सकते हो यहां पे बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं यहां पे लड़के भी है लड़कियां भी है औरत भी है।

और यहां पे ये देख सकते हो आप प्लेट प्लेट देख रही चम्मच देख रही है।

यहां पर आप देख सकते हो यह वाटर पार्क है। यहां पर यह स्विमिंग पूल है। यहां पर बच्चे--

देख सकते हो आप चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए है।

और यहां पे ये आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते हो ये गायें बहुत सारी गायें बंधी हुई--

ये दो आदमी हैं एक आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहेन रखे हैं और एक में लाल रंग के कपड़े पहने र--

और यहां पे काम कर रहे हैं और यहां पे आप देख सकते हो।

हर तरह उम्म की चीज दिख रही है यहां पे या यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो।

घर सा बणा हुआ है यहां पर अच्छे से डेकोरेशन कर रहे है यहां पर देखणे में अच्छा लग रहा है।